और यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ हैं दिवालों पे यहाँ पे अ योगा का पोस्टर ड्राइंग किया हुआ हैं और यहाँ पे अ दुपट्टे से यहाँ पे दीवाल पे डिजाइन किया गया हैं।

यह कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम चल रहा है यहाँ पे अ अ बांस और यहाँ पे रोड् --

और ये यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है एड्रेस लिखा हुआ है और ये किताब का रंग जो लिखा हुआ है वो लाल रंग से लिखा हुआ है और नीचे में ब्लू कलर से भी लिखा हुआ दिख रहा है।